यहा पर बहोत सारे पेड़ दिखाई रही है और यहां पर एक लड़की खड़ी हुई है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो देखने मे बहोत ही अच्छी लग रही है।

और कुछ बच्चे को दिखाइ दे दे रहे हैं जो खेलने के लिए दिखाई दे रहे हैं और उसमें पानी भरा हुआ जो देखने को--

इसके सामने एक लॅपटॉप रखा हुआ हैं जो देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा हैं और सामने के साइड में कुछ व्यक्ति बैठे हुए जो कि अपना काम कर रहें हैं।

ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है यहां पर बहुत अच्छे लोग भी आते हैं बहुत अच्छी तरीके से यहां पर--

काम भी करते हैं जो देखकर बहुत अच्छी तरीके से काम को प्रसाद समझकर--

और यहां पर बहुत अच्छा काम चल रहा है सड़क पड़ी हुई है खाली सड़क पड़ी हुई है जो देखने में बहुत अच्छी सड़क--

जो कि बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छा नया डेकोरेशन का सिस्टम है यहां पर पंखे में लगे हुए हैं।

तो यहां पर बहुत ही अच्छे से अच्छे कपड़े मिलते हैं बच्चो से ले कर बड़ों से सब के कपड़े मिलते हैं।

ता है बहोत अच्छी यहां पर साफ सफाई की हुई है और चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है।

ये सड़क भी जा रहीं हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है एक नीले कलर का मुझको यहां पे ड्रम सा दिखाई दे रहा है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहां पर आयुष्मान अस्पताल है जिसके आयुष्मान के नाम से पांच लाख का फ्री इलाज हो जाता है।

किताबों से देख रहे हैं समझ रहे हैं तो सीख रहे हैं और एक टीचर इनको अच्छी तरीके से सिखा भी रहा है पोस्टर पड़ता भी रहा है चारों तरफ वो बता भी--

ऊपर की साइड में लाल कलर की छतरी पड़ी हुई है जो देखने में बहोत ही अच्छी लग रही है और यहां पर पेड़ पौधे पड़े--

अटपटा मतलब और उसके बराबर कुछ पेड़ पौधे खड़े हुए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं यहां पर बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की जाती है।

बहुत अच्छा डेकोरेशन की हुई है बहुत अच्छे यहां पर आदमी आते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम भी करते हैं।

और यहां पर कुछ व्यक्ति पैसे निकलवाने के लिए आए हुए हैं जो कि तीन चार इकट्ठा ही बढ़े हुए हैं।

यह कॉफी जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें कुछ पंखे भी लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

और इसकी चारो तरफ की साफ सफाई बहुत अच्छी की हुई है और यहां पर पार्लर की दुकान भी देखने को बहुत अच्छी लगती है बहोत अच्छी यहां पे डेकोरेशन की हुई है।

और यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है बहोत अच्छा लग रहा ब--